आगे बहुत गहरा है पीछे तो कम है --

बहुत टाइम लगेगा यार जल्दी-जल्दी काम करते हैं यार --

सफेद कलर के पत्थर लगा रखे हैं इसमें --

अरे ये तो इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान है।

यार ये तो बहोत ही पुरानी जगाह है।

और इसकी पार्किंग में ये जो पेड़ लगा रखे हैं अशोक के इसकी सुंदरता को और भी ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं।

ये यहां पर हर रोज ही बाइके खड़ी कर देते हैं।

इस चर्च में कितनी अच्छी मूर्ति लगा रखी है।

और देखो बाहर ये कुर्सियां डाल रखी है बैठने के लिए --

अभी इसमें काम चल रहा है।

और वो ऑरेंज वाली भी बहुत अच्छी।

इस स्कूल में सभी बच्चों ने और शिक्षकों ने कितना अच्छा काम कर रखा है।

ये तो पहाड़ी तोते हैं रंग बिरंगी --

और ये कहां से लाये होंगे।